बहुत सारे महान व्यक्ति की तस्वीरे छपी हुई है महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस।

यह एक मंदिर है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

सारे मंदिर के बुनट में ग्रीन कलर की लाइट जल रही है तो कुछ व्हाइट जल रही है।

जहां पर बहुत सारे व्यक्ति जिम करने आते हैं।

और दीवार का कलर व्हाइट ।

और अंदर में कुछ लाइटें जल रही हैं।

यह एक गौरी साड़ी दुकान है जिसमें बहुत सारे कलर कलर के साड़ियां नजर आ रही है।

यह एक खिलौने का दुकान है जहां पर बहुत सारे खिलौने टंगे हुए हैं फिर।

दो ए_सी भी लगा हुआ है।

कार और दो महिला भी बैठी हुई है।

कलर्स की गेट लगी हुई है।

यह एक मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा है।

सब हैं जहां पर फूलों से डेकोरेशन किया गया--

के ऊपर बैगे भी रखी हुई है और एक पोस्टर भी नज़र आ रहा है और बहुत सारी कॉपियां भी है।

यह एक कपड़ा दुकान है जिसमें लगता है लड़कों के समान कपड़े मिलते हैं।

कुछ दरवाज़े भी लगे हुए हैं और कुछ लाइट भी जले हुए हैं।

में दो पंखे भी लगे हैं और पंखा नहीं घूम रहा है।

यह एक पार्क जैसा नजर आ रहा है।

ए_सी भी लगी हुई है दो पंख हैं और लाइट भी जल रहे हैं।

टेबल के ऊपर गिलास भी है कटोरा भी है और चम्मच भी दिखाई दे रहा है।

यह कपड़ा का दुकान है जिसके पोस्टर में लक्स कोजी लिखा हुआ है ।

जिसमे एक व्यक्ति किसी से बात कर रहा है ।

दो बाल्टिया है एक बोरा है और दो व्यक्ति है और दो स्विच बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यह एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय है जहां पर पुस्तक बेचा जाता है।

यह एक फील्ड है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं।

यह एक दुकान है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति अंदर में बैठे हुए एक व्यक्ति मोबाइल से बात कर रहा है।

बडी घड़ी भी लगी हुई है।

बार का कलर लाल नजर आ रहा है पीला नजर आ रहा है।

यह एक जगदंबा हॉल है।

यह एक हॉल नजर आ रहा है जिसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा है ।

यहाँ बहुत सारे दरवाजे लगे हैं दरवाजे के कलर पीला--

यहां की लाड़िया बहुत ही अच्छी लगी हुई हैं।